मिट्टी के कोड में ऊपर ऑरेंज कलर की पुताई है गन्ने रखे हुए है गन्ने की हरी हरी पत्तियां दिख रही है बहुत सारी लेडीज दिख रही है उन्होंने बहुत अलग अलग रंगो के कपड़े पहने हुए है और ऊपर सीलिंग लगी हुई हैं ।

यहाँ पर कच्ची रोड दिखाई दे रही है जिसमें मिट्टी पड़ी हुई है ऊपर टीन शेड लगा हुआ है वहाँ अंगार जल रही है और जिसमें एक आदमी खड़ा है।

दीवाल में स्काइब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है बहुत बड़ी सी विंडो है जिसका दरवाजा लकड़ी का है।

बच्चे खड़े हैं उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहना हुआ है। वाइट मोज़े हैं। सामने दो टीचर हैं। तिरंगा झंडा है।

गाड़ी की एजेंसी है और एजेंसी का गेट बहुत बड़ा है ऊपर आर्च बना हुआ है जो रेड कलर का हैं।

दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर दो लेडीस ने साड़ी पहनी हुई है एक लेडीस सर में दुपट्टा ओढ़कर बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रही है उसके हाथ में एक कैरी बैग हैं।

उसके सामने गाड़ी खड़ी है एक गाड़ी में रेड कलर हेल्मट लगा हुआ है और सामने की गाड़ी में कोई बैठा है।

पीले ऑरेंज सफ़ेद कलर के और और भी शॉप दिखाई दे रही है सब्जी भाजी की शॉप भी यहाँ कुछ लोग खड़े है और कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहा है जिसमें से दो व्यक्ति बाहर की ओर दिखाई दे रहा है जो सीढ़ी के से होते हुए होटल में प्रवेश करने की कोशि --

ऑफिस में छ व्यक्ति ख छै व्यक्ति खड़े हुए है एक व्यक्ति बैठा है वो छै व्यक्ति को कुछ समझा रहा है उनने वाइट कलर की शर्ट पहने हुए है।

और उसमें दो आईने दिखाई दे रहे हैं और ऑरेंज कलर की एक शर्ट पहना हुआ व्यक्ति किसी से को देख रहा हैं। उस व्यक्ति ने चश्मा--